इस तस्वीर में मुझे एक होटल सैफरन की फोटो नजर आ रही है।

इस तस्वीर में एक गरीब परिवार नजर आ रहा है जिसमें तीन लेडिस है जिन्होंने अलग अलग कलर की साड़ी पहनी हुई है।

एक आदमी ने अं सिर पे कुछ टोकरी उठाई हुई है जिसमें कुछ समान पड़ा हुआ है।

इस तस्वीर में मुझे एक गनतंत्र का गेट नजर आ रहा है जिसमें काफी बड़ा बोर्ड लगा हुआ है।

इस तस्वीर में टिब्बे वालियां दी हट्टी है जिसमें काफी बड़ा पोस्टर लगा हुआ उनकी दुकान का।

और एक पंडित उनके अच्छे से साफ सफाई और पूजा का समग्री रख रहा है।

और सैलून के अंदर काफी बड़ी चेयर भी है पास मे एक डस्टबिन है और वाशबेसिन बना हुआ है जिसमे कुछ हेयर वॉश करने का--

इस तस्वीर में कुछ लड़के ग्राउंड में खेलते नजर आ रहे हैं जो बीच में काफी बड़ा नेट बना है व्हॉलीबॉल खेल रहे हैं।

दुसरी तरफ और एक दूसरी तरफ काफी सेम सेम टीम बनी हुई है।

तो कुछ पेपर पेन भी है।

इस तस्वीर में एक स्टेज नजर आ रहा है।

इस तस्वीर में एक अ मेकैनिकल की शेड है।

पार्क एक दम खाली है बट्ट सभी तरफ पेड़ ही पेड़ लगे हुए हैं जिसके काम को काफी--

जिसको अच्छे से नीचे से वॉश कर रहे--

कुछ भी नहीं नजर आ रा पानी एकदम प्योर और साफ है।

कुछ पेन के अलग अलग डिजाइन के मॉडल पड़े हुए--

के पास आदमी खड़े है और एक बड़ी कार खड़ी है व्हाइट कलर की दुकान में काफी कारिगर काम करते नजर आ रहे है।

जहा पे कुछ समान बच्चे खरीद रहे है कुछ से अ--

और पास में एक बोर्ड लगा जिसमें लिखा है गो स्लो --

इस तस्वीर में एक लड़का अपनी खुद की सेल्फी लेता नजर आ रहा है।

खेत में तीन लड़के खड़े हैं जो आपस में कुछ बातें कर रहे हैं।

जेए आदमी की भाषण सुन रहे हैं और चर्च को अच्छे से सजाया गया है फूल और लड़ियों के साथ--

साफ सफाई और सुंदरता है छोटे छोटे पौधे लगे हैं जिनको अच्छे से कटिंग की गई है और काफी बड़ा ऊपर--